आप से दिखाने के लिए अच्छी अच्छी तरफ होती है।

ये बड़ियों वालों खे लिए अच्छी बातें दिन सकते हैं।

अगर आपसे दिखाने के लिए अच्छी थरह --

अगर आपसे दिकाने के लिए--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

जना बो म आदि सकता है ए लोंग बड़ी होती मिल जाती है।

अच्छी दिकाने के लिए मैं तरह तरह के लिए अच्छी अच्छी सकती है।

देने वाली होती है अच्छी बड़ी होती है ये देने वाली खे --

देने वाली होती है।

आती है डूडू वाली से आ सकते हैं।

अगर आपसे अंदर के जाने वाली है।

ये बहुत लकड़ियाँ मे से--

ए बहुत बहुत लकड़ियां मुझसे --

अच्छी अच्छी तरह के लिए --

बिलकुल टिक सकते हैं ये कार देखने वाले हैं लड़का के में--

लड़की अः लड़का होते के लिए--

हरा बरा दिकाने के लिए--

अच्छी अच्छी तरह तरह में मछली मार्केट होती है।

अगर आपसे अंदर के जाने वाली है।

ये खाना खाएंगी होती सकती बड़ा जानती है।

अच्छी अच्छी तरह के लिए देखने कुछ बिलकुल टिक नहीं सकता है।

ने वाली है साइंस होती हैं।

अच्छी अच्छी तरह होती हैं।

अंदर के जाने वाली है अच्छी तरह में बहुत होती है।

ये दिखाने वाले मे--

जाने वाली होती है अच्छी अच्छी तरह में--

अगर आपसे अंदर के जिनादे के लिए अच्छी अच्छी तरह होती है।

बड़ी लोग चिनाते सकती है।

अंदर के जाने वाली --

अच्छी अच्छी तरह में--

अंदर के प्रतीक्षा करने के लिए--